एक बिल्डिंग हैं उसमें ये काका लिखा है नीचे लैम्प लगा है एक बिजली का खंभा है तार डला दिये है ऊपर एक लाइट लगी हुई है साइड मे बहुत सारे तार लगे है।

बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी है साइड मे एक फूल पेड़ लगे है पीछे की तरफ़ बहुत सारे पेड़ लगे है लोग जगह- जगह पेड़ भी--

ऑरेंज कलर का है साइड में पेड़ लगे हुए है खजूर का पेड़ लगा हुआ है बादल हो रहे है साइड में छोटा सा पेड़ लगा हुआ है आगे की तरफ घर बना हुआ है।